यहाँ पर आपको अच्छी सुविधा देखने को मिलती है यहाँ पर आप अपने पेसो को सुरक्षित रख सकते हैं।

तेल का शूटिंग कर रहा है यहां पर आपको हर आपको सामने कुछ बैंक भी है यहां पर एक बैंक है सामने पर जहां पर आप पैसे रख सकते हैं।

देख सकते हैं भाई लोग यह एक गरीब आदमी है जो मछली बेचकर अपना गुजारा कर रहा है। देख सकते हैं इसके तराजू के हालात देख सकते हैं इसमें --

कुछ बहुत सारे पुराना मंदिर एवं --

यह इंडिया के भोपाल राज्य में स्थित है यह अंग्रेजों के जमाने का किला है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं देख सकते हैं यहाँ एक बंदा घूमने के लिए जा रहा है।

पहरा है जो हमारे देश के झंडा कलर है वहाँ पर देखो तो कोई पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं जैसे पुजारी हो गया --

एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह सत्रह बेंच हैं यहां पर आपको बैठ सत्रह चौके अड़सठ अड़सठ लड़के यहां पर बैठ सकते हैं देख सकते हैं यहां पर एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है जिससे सर पढ़ाते हैं।

फोर व्हीलर हो गया महिंद्रा थार हो गया जे.सी.बी. हो गया यहाँ पर स स सभी प्रकार का बाइक को भी एथी को बनाया जाता है देख सकते हैं भाई लोग।

लेडीज जेंट्स छोटे बच्चों के कपड़े देखने को मिलते हैं | यहाँ पर देखो तो एक टेंपो लगा हुआ है ।

देख सकते हैं भाई लोग यह एक एलेक्ट्रॉनिक दुकान है जहाँ पर हाप आपको हर एलॉक्ट्रिक सामान मिल सक मिलेगा जैसे की हो गया टिभी बोर्ड कोंप्यूटर मोबाइल --

देख सकते हैं भाई लोग यह एक बैंक है जिसका नाम है एस.बी.आई. बैंक ।